ऊपर सीलिंग मे रंग-बिरंगे बैलून्स लगे हुए है ये दुकान बहोत अच्छे तरीके से सजाया गया है।

एक साइड दीवार में ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है जिस में कुछ स्टीकर्स लगे हुए है और ऊपर एक सीलिंग फेन है।

यहाँ खाली जमीन है इसमे कुछ लोग खड़े हुए है जो यहाँ नापने का काम कर रहे है।

सामने छोटी-छोटी घास दिख रहे है ये बहोत ही प्यारा दृश्य लग रहा है।

सामने एक टेबल है जिसमे गोल्डन कलर की पेंटिंग है बहुत ही सुंदर मंदिर है ये--

यानि बाल काटने का काम हो रहा है और सामने दीवार पे किसी देवी माँ की प्रतिमा लगी हुई है

पीछे कुछ झड़िया है कुछ पेड़-पौधे है जो काफी बड़े लग रहे है और पीछे आसमान दिखाई दे रहा है जो सफेद बादल छाए हुए है।

इसमे नीले कलर का पैंट है और हरे कलर का पैंट है और ये कोई कारखाना है।

यहाँ पे किसी क स्कूल की कक्षा का दृश्य हैं काफ़ी बड़ा हाॅल हैं और काफी लंबा चौड़ा हैं और इसमे काफी टेबल बेंच रखे हुए हैं जिनमे--